सामने एक ब्लू कलर का भी घर दिख रहा है।

और सामने एक बड़ा सा घर भी दिख रहा है जिसका कलर सफेद है इस पेट्रोल पंप के साइड में एक बाइक भी खड़ा है और यहां कुछ लोग भी खड़े हैं इस पेट्रोल पंप के आसपास में बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ ट्रैक्टर दिख रहा है और इसके आस पास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है।

यहां टेबल का कलर ब्लैक दिख रहा है और हल्का व्हाइट भी दिख रहा है।

यहां एक रूम के अंदर बहुत सारे रेड कलर की बेंच लगाए हुए हैं।

और इसके दुकान के सामने और भी दुकान दिख रहा है।

यहां पर एक रास्ते पे बहुत सारे ऑटो खड़ा है इस ऑटो का कलर हरा दिख रहा है और ब्लैक भी है सामने एक ऑटो का कलर पीला और ब्लैक दिख रहा है।

टेबल का कलर व्हाइट है और इस पे कांच का गिलास रखा हुआ है इस रूम के दरवाजे--

यहां पर एक काउंटर के ऊपर एक लाल कलर का चादर बिछाया गया है और इस चादर पे स्टील का बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े--

और सोफे पे एक रेड कलर का गद्दा रखा हुआ है इस प्लाई पे गुरजन लिखा हुआ है।

यहां पर एक गुलाबी और ब्लैक कलर के कपड़े पर बहुत सारे मछलीया रखे हुए हैं और मछली के सामने एक आदमी बैठा हुआ है।

बोर्ड भी टांगा हुआ है और इस बोर्ड में चंद्रिका लिखा हुआ है।

यहां पर एक स्टील के परात में बहोत सारे जलेबियां रखे हुए हैं और यह एक बड़ा सा ब्लैक कलर के कड़ाही के ऊपर रखा हुआ है।

इस जलेबी का कलर ऑरेंज कलर का दिख रहा है इस जलेबी को चीनी में पाग किया कर बनाया जाता है और यह एक बहुत ही अच्छा मिठाई लगता है।

इस पहाड़ के सामने बहुत सारे लड़के और लेडिस भी खड़े हैं।

इस रूम में गोल्डन और वाइट कलर का पेंट किया हुआ है और इसके नीचे दराज का कलर ब्लैक दिख रहा है।

यहां पर एक पुराने जमाने का बहुत बड़ा सा इमारत बना हुआ है जो कि एक राजा का इमारत जैसा लग रहा है इस इमारत का कलर पूरा--

और इस दुकान में बहुत सारे लोग भी हैं और इस दुकान का कलर सफेद दिख रहा है दुकान के बाहर कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

इसके आजू बाजू में बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं जो की हरे भरे हैं और यह एक गार्डन टाइप से दिख रहा है।

और इसमें बहुत सारे फूलों का यूज किया गया है इन सभी फूलों का कलर ब्लू सफेद और रेड दिख रहा है।

और यहां बहोत सारे बच्चे अपने टीचर से कराटा सिख रहे है।

इस रूम के फर्श का कलर ब्लैक दिख रहा है और यह एक बहोत ही बड़ा हॉल जैसा दिख रहा है।

यहां पर एक इंडिया ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा है इस पेट्रोल पंप पर बहोत सारे गाड़ियां खड़ी है जो कि पीला और सफेद कलर की भी हैं।

और सामने बहुत बड़े बड़े घर दिख रहे हैं।